और तस्वीर में हम ये भी देखते हैं कि लोगों ने पीला सफेद और हरा रंग के कपड़े पहने हुए हैं।

जिसमें एक नौजवान भी उसके साइड में खड़ा हुआ है।

और हम दो अलमारी भी तस्वीर में देखते हैं जो कि वैसे ही दीवारों के साथ खड़ी हुई है।

बाकी के सारे उसके इर्द गिर्द खड़े हुए हैं तस्वीर में हम एक हरे रंग का छत भी देखते हैं।

और नीले रंग का शर्ट पहना हुआ है और उसके हाथों में कुछ कागज है।

और हम तस्वीर में एक व्यक्ति को देखते हैं।

हम लड़कों के पीछे बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियां भी देखते हैं।

तस्वीर में एक व्यक्ति ने लाल और का काले रंग का कपड़ा पहना हुआ है।

तस्वीर में हम देखते हैं कि बहुत सारे बस बस अड्डे पे खड़े हुए हैं।

उन बसों के पीछे हम एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग भी देखते है।

तस्वीर में बहुत सारे लोगों को यहां वहां चलते हुए भी देख सकते हैं।

और उनके ठीक बाजू में हमें कुर्सी देखते हैं जिनके ऊपर एक काला रंग का हेलमेट रखा हुआ है।

तस्वीर में हम बहोत सारे बाइक और स्कूटी को भी देखते हैं।

तस्वीर में हम एक कार को देखते हैं जिसके सारे दरवाजे खुले हुए हैं।

तस्वीर में हम एक पेट्रोल पंप को देखते हैं जो की नारंगी और नीले रंग का है।

इस पे अंग्रेजी में इंडियन ऑयल लिखा हुआ है।

तस्वीर की दाई तरफ हम कुछ पेड़ो को भी देख सकते हैं।

उसके ऊपर अंग्रेजी में भीम और यू_पी_आई लिखा हुआ है।

तस्वीर में हम एक व्यक्ति को एक काले रंग का ट्रे पकड़े हुए देखते है।

तस्वीर में हमें काले रंग का गेट देखते हैं।

तस्वीर में हम पांच काले रंग के कुर्सियां तस्वीर के बाई तरफ में देखते है।

इनमें से एक व्यक्ति गाड़ी पे हेलमेट लगाया हुआ बैग टांगा हुआ बैठा हुआ है।

तस्वीर हम देखते हैं कि बहुत बड़ा सा एक प्रवेश स्थान है।

जो कि भूरे रंग का है और उसके अंदर हम देखते हैं कि दो व्यक्ति एक लड़का और एक लड़की खड़े हुए हैं।

और हरे पेड़ को भी देख सकते हैं जोकि तस्वीर की दाईं और मे लगा हुआ है।

इन दोनों के ठीक पीछे हम कुछ पेड़ और पौधों को भी देख सकते हैं।